उसके बाजू में एक शीशा हैं और शीशे के नीचे मुंह धोने के लिए कुछ बना हुआ हैं और उसके बाजू मे एक खिड़की हैं खिड़की के बाजू में एक ऐ_सी लगा हुआ हैं।

और हमे कुछ खटिया दिख रही है खटिया के ऊपर रेड कलर का चद्दर बिछाया हुआ है और उसके ऊपर कुछ तकिया रखी हुई है और हमारे बाजू में एक मेज रखा हुआ है और उसके ऊपर एक बोतल रखा हुआ है।

और उसके अंदर दो चार कुत्ते बैठे हुए हैं और उसके पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं।

हमे यहां पर एक रूम दिख रहा है रूम के अंदर एक कुर्सी रखा हुआ है।

हमें यहां पर एक गार्डन जैसा दिख रहा है और कुछ बच्चे और कुछ आदमी दिख रहे हैं अरे बाजू में एक आंटी खड़ी हुई है।

और उसके पीछे एक आदमी और दो लड़की खड़ी हुई है और आदमी एक लड़की को लेके अपने गोदी में लिया है और वो दोनों लड़की से बात कर रहा है।

और उसके बाजू में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और उसके आजू बाजू कुछ लोखन सा बनाया गया हैं।

लड़की के सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि कुछ कर रहा है।

हमें यहां पर एक रोड दिख रहा है और हमारे आगे एक कार खड़ा हुआ है और हमें सामने में एक बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग का कलर पीला कलर का है।

यहां पर एक गॉडफादर दिख रहे हैं जिनके आजू बाजू बहोत सारे आदमी उनको देखने के लिए खड़े हुए हैं।

बारिश होने से हो वो गीला हो गया है और उसके आसपास कुछ छोटे छोटे घास हैं।

हमें यहाँ पर एक बैंक दिख रहा हैं और बैंक का नाम इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं।

ओर हमे यहां पर एक लोखन का शटर लगा हुआ दिख रहा है और बैंक के अंदर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं।

हमे यहां पर एक गैरेज दिख रहा है और हमे यहां पर एक आदमी दिख रहा है जो गाड़ी ठीक कर रहा है।

हमे यहां पर एक होटल दिख रहा है हमे यहां पर बहोत सारी कुर्सियां दिख रही हैं और एक टेबल दिख रहा है।

और उसके बाजु में कुर्सी पे एक आदमी हाथ पकड़ के रखा है और उसके ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है और उसके पीछे गुब्बारे से दिल जैसा बना हुआ है।

और हमारे सामने में एक मंदिर दिख रहा है जिसके अंदर भोलेनाथ का मूर्ति रखा हुआ है।

हमें यहां पर एक बड़ी सी सीढ़ी दिख रही है और सीढ़ी के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।

जोकि स्कूल के अंदर कुछ आदमी जा रहे हैं स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं स्कूल के आजू बाजू किसी लड़के का फोटो छपा हुआ है और लड़के के बाजू हमें ए_सी का मशीन दिख रहा है।

के बगल में पानी का थरमस है और हमें दो लाइट्स दिख रही हैं।

हमें दुकान के बाजू में एक गली दिख रहा है और गली में एक स्कूटी खड़ी हुई दिख रही है।

हमें यहां पर एक अंकल दिख रहे हैं जोकि कुछ मछलियां बेच रहे हैं।

और पेड़ के पीछे बहोत सारे पहाड़ हैं और हमें दूर दूर तक खाली पेड़ ही दिख रहे हैं।

में यहां पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल दिख रहा है जिसका रंग पीला कलर का है।

हमे यहां पर कुछ लोखन के सामान दिख रहे हैं और उसके आसपास मिट्टी के बने हुए कुछ बर्तन दिख रहे हैं।

हमें यहां पर बहोत बड़ा समुद्र दिख रहा है और हमारे आगे कुछ लोखन का बनाया गया है।

और ऊपर में रस्सी पे कुछ सजावट किया गया है और आंटी के बीच में टोकरी में कुछ रखा गया है।

हमें यहां पर एक मंडप जैसा लग रहा है और उसके आजू बाजू गमले में कुछ सजावट किया गया है।

उनके बाजू में कुछ कुर्सियां रखी हुई है और ऊपर में कुछ फूल जैसा सजावट किया गया है और आसपास कुछ लटकाया गया है।

और उसके सामने हमें रेड कलर का बिल्डिंग बनते हुए दिख रहा है जो कि अभी पूरा बना हुआ नहीं है पर हमें ग्राउंड में रेड कलर की मिट्टी जैसा दिख रहा है।

और एक घर पे पीला कलर का कपड़ा लगाया गया है और उसके आगे वाले घर का रंग व्हाइट कलर का है और उसके पीछे हमें कुछ पेड़ दिख रहे है।

जिस पे किसी बॉडी बिल्डर का फोटो छपा हुआ है और उसके सामने में एक खिड़की है।

हमें यहां पर एक सुंदर सा गार्डन दिख रहा है और गार्डन के अंदर सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं।

जोकि बंद है और बहोत सारे आदमी दुकान के आगे खड़े हुए हैं और बैठे हैं दो तीन आदमी ऑटो के बाजू में खड़े हुए हैं।

और स्कूटी के पीछे हमें एक घास दिख रहा है और कुछ छोटे छोटे घास दिख रहे हैं।

और वो वाइट कलर का कपड़ा पहने हैं और हमारे सामने में एक लोखंड की जाली लगी हुई है।

गेट के राइट साइड में एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक बाइक खड़ा हुआ है और हमारे आगे भी एक बाइक है।

लाइट के बाजू में एक ए_सी लगा हुआ है और उसके नीचे कांच का गेट लगा हुआ है।

हमें यहां पर एक क्लास दिख रहा है और उसके सामने एक ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है।

हमारे सामने जो प्या सामान रखने वाली गाड़ी है उसमें प्याज और नेनुआ रखा हुआ है।